यहाँ पर बहुत ही बड़ा समुद्र नज़र आ रहा है जिसमें पानी चमचमाता हुआ नज़र आ रहा है।

ओर एक जहाज जो है पानी में खड़ा हुआ है। साथी सूर्य की रोशनी से पानी जगमगा रहा है।

पर एक दिया दिखाई दे रहा है जो कि जल रहा है। उसी के सामने एक पिलर दिखाई दे रहा है।

कुछ हरे भरे घने पेड़ पोधे दिखाई दे रहे है। पेड़ पोधे के बिच ही एक चट्टानों को बड़ा सा पहाड़ दिखाई दे रहा है।

कुछ लाइट के केबल्स भी दिखाई दे रहे हैं और एक बड़ा सा पाइप दिखा रहा हैं खड़ा हुआ।

और उसका दरवाजा भी दिखाई दे रहा है जोकि सफेद कलर का है कुछ मुर्तिया बनी हुई है दरवाजे के पास ही --